एक रेड कलर का व्हाइट कलर का फूल दिखाई दे रहा है और हरी घास भी दे रही है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे।

एक स्टेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक रुमाल भी पड़ा हुआ है जिसका कलर ब्लैक और वाइट है यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और दीवाल देखाई दे रही जिसका कलर ब्लैक है।

ये एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है घास-फूस भी दिखाई दे रही हैं पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

लाइटे दिखाई दे रही हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा हैं और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ बाइके भी दिखाई दे रही --